एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने सिरपर टीका लगाया हुआ है| उसके गले में इअर लीड पड़ी है| इअर लीड लाल रंग की है| उसने शर्ट पहन रखी है| शर्ट काले कलर की है| उसके हाथ में एक बोतल दिखाई दी रही है| बोतल का ढक्कन नीले रंग का है।

एक माला टँगी हुई है जिसमें मोटे-मोटे फूल लगे हुए हैं| पीछे देखने पर कुछ टोकरी रखी है जिसमें फूल रखे हुए हैं| ये फूल पीले और लाल रंग के हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं| पीछे दीवार दिखाई दे रही है जोकी चट्टान से लगी हुई है| यहां पे केक्टस के बड़े -बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं| ये नेवले हुए दिखाई दे रहे हैं| यह समूह में खड़े हुए हैं। --

म-म-मेज़ पर रखी हुए दिखाई दे रहे हैं| कुछ ल कप थैले में रखी हुए दिखाई दे रहे हैं| ऊपर सामने तरफ देखने में कुछ मटकियाँ रखी हुई है रैक रखी हुई है रैक में भी मटकियाँ रखी हुई है।

सड़क दिखाई दे रही है| सड़क पर वाहन जा रहे हैं| एक स्कूटर जा रहा है जिस पर दो लोग बैठे हुए है।

एक आदमी जा रहा है जिसने का काले रंग की जैकेट पहन रखी है| बस में एक आदमी चढ़ रहा है जिसने पीले रंग की जैकेट पहन रखी है| पीछे घर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं दुकान दिखाई दे रहे हैं जिसपे बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

यह खुली हुई है| साइकिल दिखाई दे रही है| साइकिल का शीशा दिखाई दे रहा है| नीचे कुछ एक कार्टन रखा है जो की पैक है| पीछे दुकान दिखाई दे रही है| दुकान का शटर दिखाई दे रहा है| बोर्ड लगे हुए है।